मछली का शायद दुकान दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी साइकिले है और बाइक लगे हैं।

छोटी छोटी दिखाई दे रही है।

गाड़ी जैसा भी दिखाई दे रही है।

और एक बड़ा सा लाइट भी लगा हुआ है।

व्हाइट कलर में तकिया भी लगा है एक रेड कलर में भी तकिया लगा हुआ है।

दो तीन चार चम्मच रखे हुए हैं।

और एक बॉक्स जैसा भी दिखाई दे रहा--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

और यहां पे कुछ बच्चे और कुछ जेंट्स भी खड़े हैं कुछ बैठे हैं।

और दो तीन साड़ी टंगा हुआ है ।

और बड़े भी हैं जेंट्स में ।

सडक दिखाई दे रही है सामने में बगल में बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

दो डलिया दिखाई दे रहे है।

और एक राशन का दुकान दिखाई दे रहा है कुछ कुरकुरे का पैकेट दिखाई दे रहे है।

दो जेंट्स है एक बच्चे हैं।

एक घर जैसा भी है।

खराब भी है कुछ बढ़िया भी है।

पटरी जैसा दिखाई दे रही है ।

कुछ व्हाइट कलर में पेंट किया हुआ दिख रहा है।

एक बगल में खड़े है।

घर सामने में भी दिखाई दे रही है।

डलिया भी बना हुआ है और दो पिटारी भी दिखाई दे रही है।

खेत दिखाई दे रहा है।

झरने जैसा पानी बह रही है।

बहुत सारे जेंस भी है कुछ फोटो खींचा रहे हैं ।

और हरी भरी पत्ती दिखाई दे रही--

यहां पे एक सैलून जैसा दिखाई दे रही है।

दो जेंट्स खड़े हैं।